यहाँ पर किला हैगा जहा पर काफी पेड़ पौधे भी हुए हैंगे यहाँ पे काफी घांस भी हैंगे

बड़ा का गेट हेगा यहाँ पर एक घर बना हुआ है बड़ी सी बिल्डिंग बानी हुई है वाइट कलर की दिखाई दे रही है यहाँ पर विंडो भी लगी हुई हगाई

यहाँ एक मस्जिद है जिसका कलर ग्रीन है

यहां एक रोड है और यहां पर साइड पर कुआं बना हुआ है सामने कुछ पेड़ बना हुए ह रेड कलर कि है ।